यह एक टूरिजम प्लेस है। यह टूरिजम प्लेस के बहार में लिखा है महाराष्टीय पर्यटन राजधानी औरंगाबाद मध्य आप ले सह स्वागत है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है।

यह एक दुकान है। यह दुकान में खाने की सामान बिकती है। यह दुकान में कुरकुरे चोकलेट्स केक वगेरा यह दुकान में बिकते हैं। यहाँ पर पीने के लिये कोल्ड ड्रिंक वगेरा भी यह दुकान में मिल जाती है।

यहाँ पर बहोत सी लकड़ी की बनायीं चीजे यहाँ पर हैं। यहाँ पर लकड़ी की बनायीं --